इसमें सामने की ओर एक व्यक्ति जाता हुआ तथा एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

तथा मंदिर के ऊपर बल्ब लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने एक व्यक्ति नजर आ रहा है जो बैग टंगे हुए दिखाई दे रहा है।

एक और लाइन नजर आ रही है जिसमें कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

यह दृश्य किसी झरने का है जिसमें ऊपर से पानी नीचे की ओर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है।

यह दृश्य किसी बिल्डिंग का है जिसमें सामने की ओर एक तख्त पड़ा हुआ है।

तख्त के दोनों तरफ दो-दो कुर्सियां पड़ी हुई नजर आ रही हैं जो काले रंग की हैं।

इसमें सामने की और कुछ मटकी लटकी हुई भी दिखाई दे रहे हैं।

इसमें सामने की ओर बहुत सारा सामान पड़ा है जो पैकिंग नजर आ रहा है।

यह दृश्य किसी रेस्टोरेंट का है जिसमें सामने की ओर कई सारी टेबल्स नजर आ रही हैं।

सामने की ओर कुछ मूर्तियां नजर आ रहे हैं जो सफेद रंग के हैं।

ऊपर तरपाल नजर आ रहा है सामने की ओर बहुत सारी लकडियां लगी हुई नजर आ रहे हैं।

यह दृश्य किसी बड़ी बिल्डिंग का है जिसमे सामने की ओर ओम लिखा हुआ नजर आ रहा है।

जिसमें एक ठेले के ऊपर मछली दिखाई दे रही है।